और बहुत अच्छा मजा आता है। इसी बहाने बैठ जाते हैं इसमें। ये डूबती नहीं है। ये नाव बहुत बढियां है।

ये जिम है हम इससे जिम करते हैं और हमारी बॉडी बन जाती है और हमारे सिक्स पैक भी बन जाते हैं।

और हम मास वैसे भी शरीर में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं।

और ये पानी में ही रहती हैं चौबीस घंटे मतलब जब लोए निकलते नहीं है डेर में से जब लोए खत्म भी नहीं होती है।

और इसे टमाटर की चटनी भी कर लेते हैं ये बहुत अच्छे हैं ये तीस चालीस रुपये किलो मिलते हैं।

ये बहुत अच्छे पेड़ हैं इसमें हमें फल भी मिलता है और ये पेड़ कुछ ऐसे हैं जिनम फल नहीं आता ये।

सजावट के लिए बहुत बढ़िया लगते हैं।

ये बाड़ आ जाती है तो हमारी फसल गेहूं चावल जो भी हम धान बोते हैं वो सारी नष्ट हो जाती है मतलब खत्म हो जाती है।

हमारे घर कोई कारज होता है तो यह टेंड लगाया जाता है यह टेंड बहुत खूबसूरती करता है।

और हम इन पे गिर से लहुए लाल कलर के लगाए जाते हैं।

और फूल पंखली भी रखे जाते हैं बहुत अच्छे --

ये कम से कम साठ किलोमीटर चल जाता है पचास साठ की स्पीड से चल जाता है।

ये चैन वाली है इसमें बहुत जान होती है और हम इसमें पानी वानी कुछ भी भर लेते हैं।

बुखार ऊपर बहुत ऐसी है।

पानी खाद दूध सब देते हैं।

ये मॉर्निंग का समय है सुबह का समय है ये बहुत ही अच्छा है सुबह-सुबह मोंट भी फ्रेज रहता है स्कूल का कुछ सामान याद करते हैं।

ये कपड़े हैं हम कपड़े लेकर आते हैं जैंट्स या जैंट्स गर्ल्स के।